नीचे कुछ वृक्ष दिख रहे है और एक चिरैया चल रही है| उसमे से वाइट कलर का पानी निकल रहा है| नीचे आसमान थोड़ा सा स्लेटी कलर का पहाड़ सा दिख रहा है।

ग्रीन कलर के एक और आसमान दिख रहा है स्काय ब्लू कलर का और कुछ लोग दिख रहे हैं एक लड़का दिख रहा है जो साइकिल चला रहा है और कुछ लोग हैं।

पिक्चर में एक ग्राउंड दिख रहा है। वहां पर थोड़ी सी हरियाली दिख रही है।

आसपास कुछ वृक्ष दिख रहे हैं| एक रोड लाइट दिख रही है और आसमान दिख रहा है और यहाँ पे एक गेट लगा है।

और एक आसपास कुछ वृक्ष दिख रहे हैं पिंक कलर के फूल दिख रहे हैं वाइट कलर के दिख रहे हैं और आसमान दिख--

आस पास कुछ वृक्ष दिखे रहे है और आसमान दिख रहा वाइट और सेलेटी कलर का --